लड़के ने नीले रंग की टी शर्ट और काले रंग की निकर पहनी हुई है।

इस दृश्य में एक सामने इमारत दिखाई दे रही है।

इमारत का बाहर का जो रंग है हरे रंग की दीवार है और एक साइड पे लाल रंग की दीवारें हैं।

जिसमें सामने दिख रहा एक इंजीनियर जिसने नीले रंग की--

यह दृश्य एक झील का दृश्य है झील में--

ये दृश्य किसी कपड़े की दुकान का दृश्य लग रहा है।

एक लड़की जिसने नीले रंग की जींस वे हरे रंग की टी शर्ट पेहनी हुई है खरीददारी करती हुई दिखाई दे रही है।

चित्र में दिख रहा दृश्य किसी गैराज का दृश्य लग रहा है।

नीले रंग की टंकी बडी हुई है।

यह चित्र किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित है जिसमें कुछ महिलाएं--

यह किसी बाजार का दृश्य लग रहा है।

यह दृश्य किसी ऑफिस का दृश्य लग रहा है।

जहां पर कुछ कुर्सियां सामने खाली पड़ी दिखाई दे रही हैं।

ऑरेंज कलर का साथ में उसका बोर्ड लगा हुआ है।

नीले रंग की लाइटों में पार्टी हॉल बहुत खूबसूरत लग रहा है।

यह चित्र देखने में किसी पार्किंग का चित्र दिखाई दे रहा है।